लिखा हुआ है। यहां पे--

और इस जगह पे कुर्सी उ उसपे साइकल पे है और यहां पे केले सेब दिख रहे है यहां पे।

यहां पे ये दो आदमी हैं।

है गैस लिखी हुई लाइटनिंग लिखा हुआ है।

यहां पे आप देख सकते हो ये दो आदमी है और यहां पे--

और यहां पर ये झूल झूलने झूला झूला जा रहा है यहां पे देख सकते आप यहां बच्चे झूला झूल रहे हैं।

और यहां पे जिस जे_सी_बी है और यहां पे एक गाड़ी भी है।

यहां पे आप देख सकते सिटी सेंटर सैलॉन लिखा हुआ है।

यहां पे ये आदमी खड़ा हुआ है और यहां पे बहुत सारी ला कुर्सी रखी हुई है कुर्सियों का रंग--